ब्लैक कलर की ग्रिल्स भी हमें यहां दिखाई--

पीछे की ओर ग्रीन कलर का जंगल दिख रहा।

जिसके सामने कुछ पेड़ लगे हुए भी दिख रहे--

साथ में व्हाइट और येलो कलर के लोगों ने कपड़े पहने हुए--

सामने ग्रीन कलर के शर्ट में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर का आसमान--

और रेड कलर के कपड़े पहने हैं कुछ लोगों ने व्हाइट कलर के भी है।

कुछ लड़के लड़कियां दिखाई दे रही--

जो कि ब्लू कलर की रेलिंग्स लगी--

यहां पर हमे व्हाइट कलर की रोड दिख रहीं हैं।